स्विमिंग पूल है उसमे सूके पत्थों का कचरा गिरा है किनारे पर एक ओट्टा बना हुआ है।

सामने मिरर लगा है। पीछे एक आदमी के बाल काटे जा रहे है। पीछे लोग बैठे है।

कमरा है रिसेप्शन एरिया जैसा--

बुक्स रखी हुई है काला स्टूल रखा है लोहे की सीडी रखी हुई है।